यह एक कोल्ड्रिंक शॉप है इसमें बहुत सारे कोल्ड्रिंक वगेरा उपलब्ध हैं।

कुछ लोग हैं कि जिम करते नज़र आ रहे हैं।

सूरज के पास ये लोग खड़े हैं देख रहे हैं उसे।

यह एक कप शॉप है यहाँ पेण्ट के बर्तने अदि सब मिलते हैं यहाँ पे रंग-बिरंगे हर डिजाइनो के कप रखे हुए हैं और--

इस गुफा के बाहर भी एक नजर आ रहे हैं ये चारो तरफ में पत्थर ही पत्थर हैं ये पत्थरो का बना हुआ गुफा है।